ये एक सफ़ेद कलर का क्वाटर टाइप का घर है और सामने में दरक्त है बिल्कुल पत्ते झड़ चुके हैं ।

ये एक बहोत पुराना सा बिल्डिंग खड़ा है और यहाँ बिलकुल सन्नाटा हो रहा है।

और उसमें रानी और लाइट ग्रीन कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं और पीछे व्हाइट टाइल्स लगे हुए हैं।

ये कार का शोरूम है यहाँ ब्लैक कलर की चेयर मे एक आदमी रहा है और कुछ कागजे में कुछ कर भी रहा है।

ये एक शोरूम है। जहां बहोत डिजाइनर बाइक लगे हुए हैं जैसे कोई रेस में जैसे चलने वाला बाइक हो।

कार का शोरूम है और यहां बहुत सारी कार कार भी लगे हुए हैं बाइक भी लगे हुए है और दीवार में एक --